इमेज में मुझे एक अ-भारतीय स्टेट बैंक की दीवाल दिखाई दे रही है उसपे बहोत सारे पोस्टर लगे हुए हैं नीचे एक ब्रांच रखी हुई है ब्रांच पर एक औरत बैठी हुई है और एक दादा बैठा हुआ है दिखाई दे रहा है।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

इमेज में मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है बाजु में एक शटर है और एक दुकान और है और बिच की दुकान पर लिखा हुआ है ऊपर चिल्ड्रन बुक्स ।

इस इमेज में एक हरी नेट रखी हुई दिखाई दे रही है एक एकक टेंट पोस्टर सा लगा हुआ है।